--और इसके गेट भी दिखाई दे रहे है और बादल में नीले कलर का बो भी दिखाई दे रहा है बिजली की तार भी दिखाई दे रहे है और ए पत्थर भी थोड़े बहुत दिखाई दे रहे है और एग उसपर कुछ लखा हुआ है वो भी दिखाई --

-- और यहाँ पर कुछ कर रहे है इतनी सारी और इसने यंहा पर इनना अच्छा वो लग रहा हुआ है और वो बच्ची भी कुछ कर रही है।

और यहाँ पर एक खंभे लगे वो भी दिखाई दे रहे है और वो व्हाइट कलर का पानी के बाद वो भी दिखाई दे रहा है और ये बीच मे कुछ खड़ा हुआ है वो भी दिखाई दे रहा है।

--बाहर एक बिल्डिंग क बिल्डिंग दिखाई दे रही है और पेड़े भी दिखाई दे रहे है बाहर मुझे घास-फुस भी दिखाई दे रही है और मुझे वाइट कलर का आसमान भी दिखाई दे रहा है।

कुछ यहाँ पर स्टूले भी दिखाई दे रही है यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे क्लास हुई है बोर्ड भी दिखाई दे रहा है खिड़कियां भी दिखाई दे रही है और यहाँ ब ब ब्लैक कलर का भी बोर्ड दिखाई दे रहा है।